और पीछे चार आदमी दिखाई दे रहे हैं एक के हाथ में कप है और दो मोबाइल चला रहे हैं और एक आदमी चाय--

और तीर जैसी निशाना लाल कलर के बने हुए है और दोनों साइड दीवाल लो नीली दिख रही है।

पीछे दिख रहा है जो फोटो निकाल रहा है वो सामने की दीवाल में--

सामने एक स्टेज सजा हुआ है जो पीले कलर का है और पीछे सफेद कलर की पट्टी लगी हुई है जिनपे सफेद सर्किट लगी हुई है और--

कुछ आदमी सो ओढ़ कर सो रहे हैं और कुछ बेख रखे हुए हैं।

सामने एक स्टेज दिख रहा है इसके ऊपर काले और सब लाल पट्टी वाली--

सफेद हो जिसकी टी-शर्ट सफेद और ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है और पर्पल भी दिख रही है सामने एक कचरे की गाड़ी दिख रही मोटरसाइकल है।

लिखा हुआ है और नीचे की ओर एक गेंदे फूल की झालर--